ये पठानकोट की एक चिल्ड्रेन पार्क है चिल्ड्रेन पार्क के अंदर झूले लगे हुए हैं बहोत सारे लोग जो की झूला भी ले रहे हैं।

ये पठान कोड का एक चुनाइट होटल है होटल के अन्दर बहुत सारे मैट बिछाये हुए है।

और रेड कलर की चेयर्स भी पड़ी हुई हैं लाइटें भी लगी हुई हैं और ए_सी भी लगा हुआ--

ये एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट के अंदर टेबल्स लगे हुए हैं टेबल के नैपकिन और सॉस की बोतले भी रखी हुई है।

एजेंसी के अंदर मैकेनिक भी है जो गाड़ियां की सर्विस कर रहे हैं।

दुकान के अंदर बहुत सारे कलर्स के पैकेट पड़े हुए हैं पेन भी रखे हुए हैं।

पार्दे लगे हुएं है चेयर्स भी लगी हुई है।

दुकाना भी बनी हुई है यहां पर एक टेबल लगा हुआ है और पास में सिलेंडर और चाय वगैराह भी लगी हुई है।

और प्याज भी रखे हुए हैं।

टॉय वगैरा भी रखे हुए हैं बच्चों कि रबड़ बैंड भी पड़े हुए हैं।

ये एक टैंक चौक है यहां पर एक टैंक लगा हुआ है।

ये एक लाइब्रेरी है लाइब्रेरी के अंदर बहोत सारी किताबें पड़ी हुई है और लाइटें भी लगी हुई है।